एक मंदिर है बहुत सुन्दर सा मंदिर--

बहुत बड़ा पहाड़ी है उस पहाड़ी मे एक झपड़ी भी है बहुत सारे पेड़ है सुन्दर सा रास्ता बनाया गया है रोप --

छत में राड में बंधा है।

पूरा रड लगा हुआ है निचे भी बंधा हुआ है र खड़ा भी रड है बहुत सुन्दर सा बड़ा सा रड --

छड़ बांध रहा है और एक आदमी है और उधर भी एक आदमी बांध रहा है बहुत बड़ा पाइप लगा हुआ है अंदरे --

स्कूल है चारो तरफ घेरा हुआ है बहुत बड़ा-बड़ा पेड भी है झंडा लगाया हुआ है पोस्टर भी है एक गाड़ी खड़ा है दो चक्का गाड़ी और बस मासा गेट लगाया हुआ है बहुत बड़ा स्कू--

कुर्सी लगा के इधर भी बैठा है पंखा लगा हुआ है गैस टंकी भी है एक गैस भी है और सारे --

बहुत बड़ा घर है सुंदर सा घर--